अपने कान मे हैडफ़ोन लगाए --

तो काफी सारे पैकेट्स यहाँ रक्खे हुए है।

उसकी चारो तरफ ग्रील लगाया गया है।

यह अभी चुपचाप से घास के मैदान पे पढ़ा हुआ है।

पोस्टर दिख रहा है। इस पोस्टर में लिखा है करियर लॉन्चर ।

काफी खूबसूरत लग रहे हैं देखने में।

जो सुन्दर लग रहे हैं देखने मे। ऊपर घंटियाँ लगी हुई हैं।

इस तस्वीर मे हम एक ऐरोडर्म का एक तस्वीर देख रहे हैं जो --

की कुछ कपड़े सुखाए गए है कप --